सोनपुर म-महिला दो हजार उन्नीस लिखा हुआ है गुब्बारे उड़ र--

पुतला गड़ा हुआ है उसके सामने भी एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ऑरेंज कुरता और व्हाइट पैजामा पहना हुआ है ब्लैक जूते पहने हुए नीचे कार्पेट --

लकड़ी दिख रही है कटी हुई दो पेड़ दिख रहे हैं पीछे और एक दूसरा पेड़ दिख रहा है पू--

अ नीचे पीली पट्टी दिख रही है सफेद दिख रहा है उसमे सिमेन्ट गिरे हुई है हार लटके हुए हैं जो सुख चुके हैं।

ए कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं सामने दुकान दिख रहे हैं दुकान पे हारपिक है स्नैक बार लिखा लिखा हुआ हैं हिन्दी इंग्लिश दोनों मे ब्लू कलर का उनका रखने का दिख रहा है।

ये नीचे जमीन दिख रही है कैम्प लगा हुआ है घाँस लगी हुई दिख रही है कैम्प हरे कलर का है रस्सि दिख रही है एक व्यक्ति बैठा हुआ है तीन चक्र कलर ब्लू येलो एण्ड ग्रीन दिख रहे हैं।

ऊपर आसमान है पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं झण्डा भी लगा हुआ दिख रहा है एक डंडे पे कुछ लोग अंदर ग्राउन्ड मे खड़े हैं ग्राउन्ड हरे कलर का घास--

यह एक पुलिया लग रहा है रेलवे पटरी दिख रही है गड़िया दिख रही हैं गाड़ियो के मिरर दिख रहे हैं।